एक आदमी है उसके बगल में एक बाइक है उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है इधर एक रेड बाइक है उस तरफ एक फिरोजी कलर का ग्लैमर खड़ा है और बहुत सारा ऑटो कुछ ऑटो इधर ऑटो का एरिया लग रहा है।

इंटरेस्टिंग है और ये सब जगह पे आप पिक्चर्स लेंगे तो बहुत सुन्दर लगेगा ग्रीन पेड़ दिख रहे हैं इधर साइड से फूल दिख रहे एक लैंप दिख रहे है छोटे से बहुत सुन्दर है।

बहुत ज्यादा रॉक्स एंड ट्रीज ग्रीन हैं पुरे बहुत सुंदर लग रहा है एरिया ।

ये भी ये आपका एक बुक स्टोर है सरस्वती बुक भवन बंका बाजार धार्मिक एवम प्र पाठय पुस्तकों एवम खुदरा विक्रेता यहाँ पे भी आपको हर तिने चार तरीके के बुक धार्मिक बुक भी मिलेंगे।

यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ सीढ़ियां हैं और साइड में कंस्ट्रक्शन का कुछ एक यूज करने वाला इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है कुछ सामने छोटे-छोटे रूम्स टाइप दिख रहे हैं दो साइकिल है एक ऑरेंज कलर का केसरी झंडा टंगा हुआ है ऊपर से थोड़े-थोड़े पेड़ दिख र --

डरल बैंक ये बैंक फेडरल बैंक मुज़फरपुर शाखा में है। देख सकते हैं इसका ए.टी.एम. है।

फ्रेंड ये एक विष्णु विहार अपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं ये बहोत सुंदर अपार्टमेंट है।

आपका एक बुक शॉप है विजय बुक कॉर्नर।

एक साइकल साइड मे खड़ा है कुछ लोग आ और जा रहे हैं | एक रिक्शा वाला दिख रहा है | पब्लिक कुछ वेट कर रहे होंगे बस आने का और कुछ बस मे जाने का।

इतनी सुन्दर-सी एक जीसस क्राइस्ट जो बाहर है बहुत अच्छी --

बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है जहाँ पे आप देख सकते है की पानी ठेहरा हुआ है।

देख सकते हैं ये आपका मेह्जिद है काफी सुंदर आप देख सकते हैं ।

ये कैफे है। टी जोन जिसका आपके टेबल देख रहे हैं। कुछ लोग चाय पीने आते हैंफ्लावर रखा है।